और लोग है देख सकते हैं ये शादी घर का डेकोरेशन है काफी मस्त सजावट किया हुआ है देख सकते हैं।

बढ़िया काम है लोग काम पे जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा आपलोगों को काफी मस्त दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं।

और यहाँ पे काफी है |

क्या है पता है भाई साहब

सब कोई जल्दी उल्दी में अपना एग्जाम दे रहे हैं ताकि --

के बाद कुछ अलग देख सकते है।